इस इमेज में एक सड़क दिखाई दे रही है जहां पर कई सारी ऑटो रिक्शा चलती हुई नजर आ रही है साइड में एक --

इस इमेज में दिखेगा यहां पर एक सड़क दिखाई दे रही है और साइड में काफी सारी दुकानें नजर आ रही है।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

और एक बाइक भी दिखाई दे रही है।

आकाश में बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है जहां पर कई लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर आते दिखाई दे रहे हैं।

और लाइट भी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर हमें पार्क दिखाई दे रहा है बीच में पत्थर का रास्ता भी बना हुआ है।

कुछ पेड़ है जिनमें फल फूल आ रहे हैं और पीछे के साइड बड़ी सी इमारत और कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं।

और बाहर बड़ा सा गेट भी नजर आ रहा है यहां पर कई सारे दरवाजे और खिड़की भी दिखाई दे रहे हैं।